इस तरह के दुकान हमारे घर के आस-पास भी देखने को मिलते है। एवं इन दुकानों से लोग बहुत से उपयोगी की सामान खरीदारी कर सकते है।

स्कूल का दरवाजा लोहे का बना हुआ है यहा एक रास्ता बना हुआ है। इस तरह के स्कूल हमारे घर के आस-पास भी देखे जाते है।

तस्वीर में हमे एक चार मंजिला मकान देखने पा रहे हैं। इस मकान के बाहर बहुत ही बड़ा मैदान मौजूद है।

यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं एवं यहाँ पर बहुत-सी कुर्सियां ओर टेबल भी लगे हुए हैं । यह बहुत ही सुंदर दुकान है।

इस तरह की जंगल बहुत ही कम स्थानों पर देखे जाते हैं एवं यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग आते हैं।

इस तस्वीर में हम एक पंडाल देख पा रहे हैं एवं पंडाल के अंदर हम दुर्गा माँ की प्रतिमा देख पा रहे हैं जहाँ पर लोग दुर्गा माँ की आराधना कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हम एक मुंह दिखाना दुकान देखने पा रहे हैं यह एक बहोत ही बड़ा मुंह दिखाना दुकान दुकान है।